दृस्य में भी ईटे से बना हुआ मेबी कच्चा मकान का चित्रण है ये और निचे एक वाइट रंग की बढ़िया कार खड़ी हुई है|

दृश्य में बड़े से खूबसूरत मकान का चित्रण दिखाया गया है जोकि अभी अभी बना हुआ नजर आ रहा है।

दृश्य में किसी पर्यटन स्थल का चित्रण किया हुआ लगता है।

त्रण नजर आ रहा है।

छोटा सा सफ़ेद रंग का टेंट लगाया हुआ है और वहाँ दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जहाँ पे बहोत सारे छोटे-छोटे टेंट लगाए हुए --

किसी काम के तहत चलती हुए मशीनों का पीक लिया गया है।

और आस-पास कुछ ऊंची और छोटी मकाने हैं।

हमें ऐसा जान पड़ता है जैसे फॉरेस्ट एरिया का चित्रण-- --

दृष्य मे एक बड़े से आ-खुले मेदान मे या किसी गार्डेन मे बहोत सारे बोधिक भिक्षु कुछ कार्य करते हुए दिख रहे हैं ।